जिसमें बहुत सारी जलेबियां पड़ी हुई नजर आ रही हैं।

होटल दिखाई दे रहा है जिसके बाहर--

दिखाई दे रही है जिसकी टेबल ऊपर बहोत सारी दवाई पड़ी हुई है।

हुआ है और इस पर डी_जे भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक मदान दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक कॉलोनी दिखाई दे रही है।

पौधे लगे हुए हैं और पेड़ भी काफी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमी बैठे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके बाहर पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कारें भी खड़ी हुई--

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक गाड़ी खड़ी नजर--

कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक पट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसका कलर --

इस पिक्चर में हमें एक तलाब दिखाई--

इस पिक्चर में हमें दो खेत दिखाई दे रहे हैं जिसमें फसल--

इस पिक्चर में हमें एक चर्च दिखाई--

दे रहा है जिसमे बहोत सारे--